माला यहा मूर्ति के पीछे काफी सारे ऊंचे ऊंचे पेड़ पौधे और काफी सारी घासे भी लगी हुई दिख सकती हैं।

माला यहाँ एक सफेद रंग की काफी बडी सी बिल्डिंग दिक्सती है माला यहाँ बिल्डिंग के आज कुछ पेड पौधे लगे हुए दिक्सते है।

माला या एक सफेद रंग की गौतम बुद्ध की बड़ी सी मू मूर्ती बनी हुई दिखसती है माला जिस मूर्ती के गले में --

मला यहां काफी सारी गाहसे उगती हुई दीक्षिता हे मला यहां काफी सारे पेड और काफी सारे पौडे दीक्षित हे मला यहां असमानभी काफी नीला दीक्षित हे.

माला यह बिल्डिंग के आगे काफी सारे पेड़ उगे हुए दिख सकते है विधायक यह आसमान काफी नीला दिख सकता है.